यह बहोत ही अलग और बहोत ही अद्भुत दिख रहा है।

सामने ही बहुत से स्कूटी दिखाई दे रही है।